यह एक नदी दिख रही है जिसमें कुछ लोग नहा रहें हैं। नदी के पीछे सूरज दिख रहा है। कुछ पेड़-पौधे दिख रहें हैं आसमान दिख रहा है।

यहाँ कुछ डांस करती हुई लड़कियाँ दिख रही है जिसमें पाँच लड़कियाँ हैं और यह काफी तैयार हुई है इन्होने घुंगरू आलता उम काफी सारी ज्वेलरी सब पहना है।

एक साइकल है और उसके आस-पास और नदी के आस-पास कुछ पौधे हैं नदी के पीछे पहाड़ी दिख रही है आसमान दिख रहा हैं।

स्ट्रीट लाइट दिख रही है एक शेड लगा हुआ है और उ बेंच का कलर है काला।